यहां झंडा भी है और चार्टपेपर भी है और कंप्यूटर मोबाइल बहुत अच्छा है और गाड़ी पैंट शर्ट

यहाँ एक आदमी फोटोकॉपी करवाते हैं यहाँ पे पानी जगह है बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे लाइट भी है और पंखा भी है यहाँ बहुत जगह हैं यहाँ बैठे हैं लोग महिलाए।

लाइट भी बर रहा है और सीसी कैमरा भी है और में दरवाजा भी है यहां बहुत अच्छे जगह है यहां पर हम रहते हैं और बहुत अच्छे जगह है।